एक जीन्स पहन रखी है और उसमें व्हाइट कलर के शूज़ पहन रखे।

एक डेरी है डेरी का नाम अनमोल है उसके बाहर चार बच्चे खड़े हुए हैं ।

एक दुकान है दुकान का नाम वस्त्र डेयरी फार्म है।

एक चर्च के बाहर सात लेडिस खड़ी हुई हैं।

एक चर्च है। चर्च के बाहर एक पेड़ खड़ा हुआ है।

उसके पास एक तराजू रखी हुई है उसके पास पाँच व्यक्ति मछली खरीद रहे हैं।

एक शुरंग है शुरंग में थोड़ा होल हो रक्खा है।

उसमें एक व्यक्ति जाने की कोशिश कर रहा है जो कि बैठा बैठकर भी जाने की कोशिश कर रहा है उसने शूज पहन रक्खें हैं ।

और दोनो ने चप्पल पहन रखी है।

बैंक के बाहर बाइक भी खाड़ी हुई है और एक ठेला खड़ा हुआ हे।

वहा पे गन्ना भी रखा हुआ है मंदिर मे बलून भी लगे हुए हैं। बलून का कलर येलो --